जो हमारे दरभंगा शहर स्तिथ है।

कुछ दूरी में ये शिव जी का मंदिर है और --

उमं गेट है और पोस्ट ऑफिस में अकाउंट भी खोला जाता है।

कोर्ट से कोई लैटर वेटर आत तो यही आता और फिर से --